साथ ही तलाव के पास कुछ छोटे-छोटे हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही उसकी मशीन के पास एक बाइक खड़ी हुई है।

जिसमें काफी सारा सामान रखा हुआ है कुछ स्टील के बर्तन भी दिखाई दे रहे है कुछ प्लास्टिक का सामान भी रखा हुआ है।

साथ ही एक बच्ची के साथ उसके पापा भी--

कुछ मशीन भी खुली हुई दिखाई दे रही है। कुछ दीवार पर भी औजार रखे हुए दिखाई दे रहे है।

चेयर पर बैठा हुआ है जो कि मिरर के सामने अपने आप को देख रहा है।

एक टावर भी लगा हुआ दिखाइ दे रहा है।

कुछ डस्टबीन भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

डॉक्टर साहब एक चीयर पर बैठे हुए दिख रहे हैं।

यह एक शादी लॉन की पिक्चर हैं जो काफी डेकोरेट की हुई पिक्चर हैं।

नीचे भी काफी कलरफुल लाइट लगी हुई है।

बाग में काफी हरियाली दिख रही है।

पानी फत्थरों के ऊपर से बह रहा है काफी बड़े बड़े और कुछ छोटे फत्थर भी--

ये एक मोबाइल की शॉप है जिसमें काफी तरह के मोबाइल दिख रहे है।

कुछ पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे है।

जो कि काफी बड़ा लग रहा है और उसमें बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है।

पुल के ऊपर कुछ फिसल पट्टीएं भी दिखाई दे रही हैं।